और इसे वाइट कलर की फूल से सजाया गया व्हाइट रेड येलो --

कुशवाहा कृषि केंद्र एवं आहार सेंटर लिखा हुआ हैं।